शोरूम दिखाई दे रहा है।

खाली सीटें दिख रही हैं।

बड़ी नदी दिख रही है।

आदमी खड़ा दिख रहा हैं।

मुझे भी यहां एक ढाबा--

मुझे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं।